शायद से आम का पेड़ है और पीछे बाइक खड़ी है और बिल्डिंग है पीछे।

इसमें एक फोटो फ्रेम है जी फ्रेम में नदी नाव है बहोत अच्छा लग रहा है सामने एल_ई_डी स्क्रीन टी_वी है।

यहाँ का जिम अच्छा और अच्छा लग रहा है बहुत प्यारा लग रहा है जिम और ये जिम का समान है एक्सरसाइज़ करने वाला है ।

ये एक बड़ा सा हॉल लग रहा है जहां तक कि ये--

सीन टाइप दिख रहा है और ये मछुआरे मछली पकड़ कर बेच रहे हैं।

पीछे ग्रीन कलर का बहुत ही प्यारा घर दिख रहा हैं।

यहाँ पर बहुत सारी आग बुझाने वाली गड़ियां खड़ी है और कुछ एक एक दो एम्बुलेंस भी खड़े है ये आ--

और एंट्री में ही बहुत अच्छे से सजाया गया है किसी की सादी है और साइड से यहाँ से कोई इंसान गुजर रहा है और--

पश्चिम सोे विज्ञा प्रमाणित पुनिर म मरो मनोजकर यह एक सरकारी रेलवे स्टेशन दिख रहा है और --

यह किसी जिम का फोटो दिख रहा है जहां पर बहुत सारे डंबल्स रखे हुए हैं जी।

यह किसी रेस्टोरेंट का फोटो दिख रहा है जहाँ पर बहुत सारे चेयर्स रखे हुए है खाना खाने के लिए टेबल्स भी है।